इस तस्वीर को देख कर मालूम चलता है कि यहां पर किसी उत्सव की तैयारी चल रही है और यहां पर बहुत ही भारी मात्रा मे व्यक्ति एक जगह एकत्रित होकर शो का माहौल देख रहे है।